शायद कुछ फैक्ट्री वगेरा है जो राशन वगेरा मिलता तो यहां पे सारे आदमी लाइन मे लगे हुए है और बगल मे एक बस और--

गाइस सामने में बहोत बड़ा घर है जिसके एक बगल में भी अंदर जाके घर है जो--

अगेन हम लोग यहाँ पे देख रहे है गाइज एक घर है दो घर हैं जो की एक सामने घर है एक छोटा सा बगल में दिख रहा है।